फूलों की मालाएं सफ़ेद हरे और लाल और नारंगी रंग की हैं। उसके पीछे एक किसी स्कूल की बस खड़ी है जो कि पीले रंग की है।

सूरज ढल रहा है तस्वीर में लास्ट में कई सारे हरे रंग के पेड़ खड़े हैं। एक घाट सा बना है जिस पर बोहोत सारे लोग भी बैठे हैं|